उन्हे ये साड़ी डाल रखी है यह लाल रंग की साड़ी है।

यह एक पुलिया बनाया हुआ है इसके नीचे से नदी का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है।

मंदिर है मंदिर एक एक गौतम बुद्ध का है।

यह एक गौतम बुद्ध की मूर्ति है गौतम बुद्ध --

इस बोर्ड के बीच में एक काला पत्थर के ऊपर द नेशनल वॉर मेमोरी पुनने के कुछ तस्वीरें भी लगाई हुई नजर आ रही है ।